का कप रखा हुआ दिख रहा है और एक प्लेट रखी हुई दिख रही है प्लेट के अंदर कुछ रखा हुआ दिख रहा है वाइट कलर का दिख रहा है एक ट्रे दिख रहा है ट्रे जो है ट्रे येल्लो कलर में दिख रहा है।